यह एक चित्र है इस चित्र में एक मंदिर नज़र आ रही है और ये मस्जिद में बहुत से लोग नमाज़ पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और इसमें बहुत से लोग भी नज़र आ रहे हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र में कुछ लोग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे कुछ --

यह एक चित्र है चित्र में एक कॉफी का पैकेट नजर आ रहा है और उसके नीचे कॉफी के डिब्बे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक चित्र है चित्र में एक बड़ा सा रूम नज़र आ रहा है।

यह एक चित्र है इस चित्र में एक बड़ा सा आर्क नजर आ रहा है और इसकी साइड में बहुत से पेड़ भी दिखाई दे रहे--

यह एक चित्र है इस चित्र में कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जो कि पेंटिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।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

यह एक चित्र है इस चित्र में बहोत से लोग नजर आ रहे हैं और यहां बहोत से फूल भी दिखाई दे रहे हैं।

और इसमें कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।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

यह एक चित्र है इस चित्र में एक बहुत बड़ा सा बिहार नज़र आ रहा है।

यह एक चित्र है इस चित्र में एक पेन नजर आ रही है।

जिसमें बहुत सी चीजें रखी हुई है।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

यह एक चित्र है इस चित्र में एक काली कलर की गाय नजर आ रही है जिसके पास दो लोग भी नजर आ रहे हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र में सूरज डूबता हुआ नजर आ रहा है और बहुत से घर भी दिखाई दे रहे हैं।